फोटो के पीछे बैकग्राउंड में एक स्टेज बना हुआ है जिसमें कलरफुल फोटो लगे हुए हैं ये सीन रात का है।

जो प्लेटफार्म से खींचा गया है प्लेटफार्म के आस पास में बहोत सारे पेड़ दिख रहे--

जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है और गले में एक नेक बैंड का एयरफोन डाल रखा है।

दो लड़के खड़े है जो फोटो खींचा रहें एक ने व्हाइट कलर शर्ट पहनी है एक ने--

बहोत सारे लोग पीछे की साइड में भी कसरत कर रहे हैं।

साथ में ही यहां पर एक फेवीक्विक की भी और पानी की बोतल रखी है।